और बाहर एक रेड कलर की साड़ी पहनी हुई महिला गिफ्ट खरीदनी आई होगी।

और बाहर से नेट से घेर दिया है।

डेकोरेट किया है डाइनिंग टेबल लगा है कुर्सी कुर्सी रखा है कॉभर करके।

ये रात के समय लिया गया पिक्चर है क्योंकि पीछे डार्क दिख रहा है और आगे ग्राउंड हरा है ये कोई छोटा सा ग्राउंड के अंदर है।

यह एक होटल है जहां खाना खाने के लिए लोग आते हैं।

एक आदमी कमर पे हाथ और सर पे हाथ रखे हुए बैठ खड़ा है।

यह एक दुकान है जो एक लड़की चला रही है।

होम थिएटर बज रहा है।

कुछ नोट कर रही है।

एक पानी पुरी वाला है।

पार्क के अंदर छोटे छोटे वृक्ष भी लगे हुए है।